और यहाँ पेट्रोल पंप के पीछे में एक बड़ा सा पेड़ दिख रहा है और दूर में एक बहुत बड़ा घर भी दिख रहा है और इस साइड में एक छोटा --